यह एक इलाहाबाद बैंक है।

लिखा हुआ है ऑन बैंक ग्रामीण रोजगार सनस्था जलयन उतर प्रदेश --

ऊपर में पंखा लगा हुआ है। टाइल्स का बना हुआ --

यह एक जिम सेंटर हैं।

ध्यान से एक गाय ब्लैक कलर की है।

बर्डे टॉफी भी हैं।

यह एक कलम का बुक स्टोर है। जहां पे एक आदमी --

एयर बैग लगाया हुआ है।

पेड़ लगा हुआ है और साइड में खेतों के उस पार एक आद किसान हल चला रहा है और बगल में --

एक बड़ा सा ब्रिगेट मछली है।

थ्री हंड्रेड सेवंती फाइव एक में लिखा हुआ है थ्री हंड्रेड फिफ्टी फाइव एक में लिखा हुआ है थ्री हंड्रेड नाइनटी नाइन रूपीस ।

यहाँ एक गाड़ी में डी_जे लोड है जो बोहोत सारा स्पीकर्स है और नाम है --

और एक वायर है जो उधर से लाइन पार किया हुआ है और एक साइड में और एक घर है जिसका शटर खुला --

जिस का नाम है गुनगुन पानी पूरी सेंटर --

यहाँ पे लिखा हुआ है सात सौ छियासी हामिद अली खां मोटर स्पेशलिस्ट ।